जैसा की आप देख सकते है एक फल दुकान जो की काफी अच्छा फल दुकान है।

जैसा कि आप देख सकते है एक टोटो है जो कि काफी अच्छी टोटो है और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है।

मोबाइल सर्विस भी अच्छी बनाई जाती है जो की काफी अच्छी है लोगो को बहुत ही पसंद आती है यहाँ का।

यह आप देख सखते हैं की एक स्कूल है जिसका नाम है आरएसएम पब्लिक स्कूल जो की बोहोत ही बढियां स्कूल है। यहाँ पर बोहोत ही सारा बच्चा का एडमिशन कराए हैं जो भी बोहोत ही --

यह टोटो इलेक्ट्रिसिटी से चालता है जो की काफी अच्छा है।

जैसा कि आप देख सकते है। यहाँ पर एक फोर व्हीलर है। जो की इसको रिपेयर कर रही है। यह दूकान बहुत ही बड़ी दूकान है। जो कि यह पर फोर व्हीलर को--

और ये रात का सीन है | जगह काफी अच्छी लग रही है । ये डेकोरेशन बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन किया गया है ।